बिल्डिंग है जो कि बोहोत बड़ी बिल्डिंग है और इस जगह पे इस बिल्डिंग में बोहोत सारे लोग रहते होंगे। ये बहोत सारे इस बिल्डिंग बहोत अच्छी ये सर्विस देती है। यहाँ पे एक अच्छे से --

इस पार्क में मिले हैं और ये पार्क बोहोत बड़ी है और ये पार्क जैसा दिख रहा है बट ये पार्क नही है ये कॉलेज टाइप का है। इस जगह पे बहोत सारे लोग आये हुए हैं।